आस-पास कुछ मछलियाँ रखी दिख रही है। यह ऊपर की तरफ बत्तियाँ भी दिख रही है। और सामने चिकन का पोस्टर भी दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे सामने खड़ा हुआ लड़का फोटो खींचाते हुए दिख रहा है पीछे की तरफ एक झारना दिख रहा है।

ये एक कराटे क्लास चला रहा है और सामने ऊपर की तरफ एक पंखा भी दिख रहा है।

आस-पास जिम की कई वस्तुएं रखी दिख रही है। यह दृश्य एक जिम का है।

इस चित्र में मुझे सामने खड़ा एक मनुष्य दिख रहा है जो की अपना मोबाइल फ़ोन से अपना एक चित्र उठा रहा है।

इस चित्र में मुझे नीम सैलून का गेट दिख रहा है। गेट के अंदर कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं सलून में।

कुछ गुब्बारे जमीन पे पड़े हैं और ये गुब्बारे लाल कलर की दिख रही हैं।

इस चित्र में मुझे मछली बाजार दिख रहा है। मछली बेचते हुए एक इंसान दिख रहा है।

सामने की तरफ मछलियां रखी हुई दिख रही है तराजू-पल्ला दिख रहा है चापड़ दिख रहा है बाल्टियाँ और गमले दिख रहे हैं। और आस-पास कुछ मनुष्य खड़े दिख रहे हैं।

इस चित्र में मुझे सामने खड़ा हुआ एक बच्चा दिख रहा है। और पास में खड़ा एक बच्चे का आधा चित्र दिख रहा है।

जो की अपना पिक्चर उठाते हुए अपने फ़ोन से दिख रहा है। पीछे काफी वस्तुएं दिख रही है जिम करने की।